यहां पर दाई तरफ में एक लाइट बल्ब जला हुआ है।

यहां पर आगे एक वाटर टैंक का कार भी दिख रहा है।

यहां पर आसमान का रंग सफेद है।

यहां पर ऊपर की ओर पीछे में एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पर दाइ तरफ के आदमी ने आर्मी प्रिंटेड टीशर्ट पहना हुआ है।

यहां पर पिंक पर्पल कारपेट दिख रहा है।

यहां पर पीछे के वॉल को व्हाइट कलर किया गया है।

यहां पर राइट साइड में कुछ हरे भरे घास दिख रहे हैं।

यहां पर बीच में ग्रीन पर्दे लगाए हुए हैं।

यहां पर एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

यहां पर ग्राउंड में कुछ हरे ग्रास उगे हुए हैं।

यहां पर बाई तरफ एक घर बन रहा है।

यहां पर बाई तरफ के बिल्डिंग का कलर येलो है।

यहां पर आगे के सेल्फ के अंदर डोम्स का स्केच पेन रखा हुआ है।

यहां पर एक आदमी ने ब्लैक शूज़ पहना हुआ है।

यहां पर पानी में एक बोट दिख रहा है।

यहां पर दूर बाईं तरफ में एक पहाड़ दिख रहा है।

दाएं तरफ पर दो डस्टबिन रखे हुए हैं।

यहां पर दाई तरफ वाइट कार दिख रहे है।

यहां पर ऊपर आसमान का रंग सफेद है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

यहां पर पीछे के ब्रिज में एक आदमी ने लाइट पिंक शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर दाई तरफ दीवार पर कुछ पे पौधे उगे हुवे हैं।

यहा पर आगे वाले चिड़िया के पूछ का रंग सफेद और काला है।

यहां के टेबल और चेयर का रंग ब्राउन है।

यहां पर आदमी ने काले रंग का शर्ट पहना है।

यहां पर बाई तरफ में एक बोट दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे आदमी ने ऑरेंज और रेड कपड़े पहने हुवे हैं।

यहां के दीवार का रंग सफेद है।

यहां पर आगे वाले आदमी ने ब्लैक पैंट और डार्क ब्राउन टी शर्ट पहना हुआ है।

यहीं पे दूर पीछे के सेल्स में ब्लू वॉटर बॉटल रखा गया है।

यहां पर दाएं तरफ में एक बिल्डिंग बना हुआ है।

यहां पर ऊपर विशाखा डायरी पार्लर लिखा हुआ है।

यहां पर दूर कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

यहां पर पीछे बैठी एक आंटी ने ब्लैक टॉप और रेड काले पहना हुआ है।

यहां पर दाई तरफ में एक रुमाल रखा हुआ है।